सामने एक सीढ़ी रखा हुआ है।

और पीछे जो है से पेड़ --

एक और व्यक्ति चावल के देर पे बैठा हुआ है।

घर नुमा बना हुआ है उसके बगल में एक नारियल का पेड़ है।

यहां टेंट के नीचे बहोत सारी लाइटे जल रही है।

और एक नन जो है से जो व्हाइट कलर के ड्रेस में है।

ये किसी रूम का पैसेज है पैसेज के सामने में एक बड़ा सा--

जिसके नीचे लाल कलर से पेंट किया गया है।

टोपी पहन के दूसरा व्यक्ति उनसे बात कर रहा है।